यहाँ सामने से रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है बीच मे मीडीयम दिखाई दे रहा है मीडीयन मे हमे रंग बिरंगे कलर्स दिखाई दे रहे है यहाँ पे एक आदमी भी खड़ा हुआ है जिसने टोपा लगाया हुआ हैं।

नीचे हमें फ्लोर दिखाई दे रहा है फ्लोर पर डिजाइन बनाई गई है व्हाइट कलर के पेंट से सामने हमे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जो कि पिंक कलर का बॉक्स है।

यहाँ एक वोचमैन भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुर्सियाँ रखी गई है यहाँ पे कुछ कुर्सियाँ रखी गई है जोकि सेपरेट है कुछ कुर्सियाँ रखी गई है जोकि जॉइन्ट है पीछे हमें कई सारी पोस्टर्स भी लगे हुए नज़र आ रहे है ऊपर हमें भगवान के तस्वीर दिखाई दे रही है।

जिसमे हमें शटर लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें एक पोस्टर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है ये कोई संगीत क्लास के एडवरटाइस्मेंट किया गया है ऊपर हमे ए_सी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

उसके बगल मे हमें एक और शॉप दिखाई दे रही है जो की संगीत के उपकरण मिल रहे है यहाँ पे हमे कुछ बाँसुरियाँ कुछ ढोल कुछ हारमोनियम जैसे सामान भी रखे हुए दिखाई दे रहे है।

सीडी हैं जोकि निचे की ओर जाती हुई नजर आ रही है यहाँ कुछ कपल्स भी बैठे हुए हैं।

पहाड़ दिखाई दे रहा है जो कि बहोत बड़ा है हमें अशोक के पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने हमें पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो कि नारियल के पेड़ हैं कुछ हमें खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं एक--

मीनार दिखाई गई जो काफी पुरानी है > आसपास कुछ हमें कॉलमस भी दिखाए जा रहे है जिसके ऊपर डिजाईन बनाई गई है इसके सामने हम देख सकते है की एक तस्वीर है जिसमे हमे सीढियाँ भी नजर आ रही है उसके बगल मे भी एक मंदिर है।